कुछ आदमी आ रहे हैं तो कुछ जा रहे हैं कुछ खड़े हैं कुछ बैठे हैं बहुत सारे पोस्टर भी लगे हुए हैं।

और उसके इस तरफ टीन भी लगी है टीन के ऊपर भी पोस्टर लगा हुआ शायद उस तरफ दुकान भी है।

फूला फूल भी लगे हुए है गुलाबी और पीले कलर के हरी भरी पत्तियां भी लगी हुई हैं।

कपड़े रखे हुए हैं नीचे टाइल्स भी लगी हुई हैं वाइट कलर की छत है और बल्ब भी लगे हैं।

और व्हाइट कलर की लाइटे भी लगी हुई है उस तरफ गाड़ियां भी चल रही है ऊपर टीन भी लग प लगी हुई है।

सामने पेड़ दिखाई दे रहा है बड़ा सा और भी छोटे छोटे पेड़ लगे हुएं हैं।

रोड भी बने हुए है उसके इस तरफ घर भी बना हुआ और भी उस तरफ भी घर बना हुआ है।

व्हाइट और हरा कलर का पेंट हुआ है जीने भी बने हुए हैं।

और उसके इस तरफ लिफ्ट वाले जीने दिखाई दे रहे हैं जोकि नीचे की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं।

उसके ऊपर टंकी रखी हुई है उसके सामने भी घर बना दिखाई दे रहा--

व्हाइट कलर की लाइन भी खींची हुई है नीली कलर की इस तरफ कुछ बिछा हुआ है।

इस तरफ पंखे की दुकान है दो गाड़ी भी खड़ी है साइकिल भी खड़ी है।

तीन पोस्टर लगे हुए हैं आइसक्रीम की दुकान भी है उसमें भी एक आदमी खड़ा हुआ है।

और उस तरफ बेड भी है उम्म और ऊपर पंखा भी लगा हुआ है।

घर भी दिखाई दे रहा और बड़ा सा पेड़ भी दिखाई दे रहा और भी बहुत सारे घर हैं।

एक लड़का खड़ा है एक आदमी बैठा है और एक लड़की भाग रही है।

और कुछ आदमी बैठे भी हुए हैं दो आदमी खड़े भी हैं वाइट कलर का पेंट हुआ है लाइट भी बहोत सारी लगी हुई हैं।

और कुर्सियां भी बहोत सारी रखी हुई मेज भी खूब बहोत बड़ा लगा और टाइल्स भी वाइट कलर की लगी हुई है नीचे।

दो आदमी उस तरफ खड़े हैं और पोस्टर भी लगा हुआ है जिने बने हुए हैं।

नीचे टाइल्स व्हाइट कलर की लगी हुई हैं भुरी कलर भी उसमें लगी हुई हैं।